और एक छतरी भी लगी हुई है।

गिटारें रखी हुई हैं। यहां पर छोटी और बड़ी गिटारें भी रखी हुई हैं।

और इस जिम में काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक पार्क है यहां पर--

शटर आला गेट भी लगा हुआ है।

जीस पर मुझे कोऑपरेटिव बैंक --

काफी सारा लोहा पड़ा है।

इंडियन फ्लैग के खंभे भी खड़े हुए हैं।

यह शॉप के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है।

और एक व्यक्ति साइकिल लिए खड़ा हुआ है।

यह एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है।

कार्य कर रही है और इसमें एक सामने बॉक्स है।

और पेड़ भी लगे हुए हैं पीछे नीले कलर की टीन का वो बना हुआ है घर।

और यहां पर केई प्रकार के अलग अलग डिजाइन के कार खड़ी हुई है।

और यहां पर चार पांच चेयर पड़ी हुई हैं और टेबल रखी हुई है।

आसपास काफी ईंट रखी हुई हैं।

और नीचे पत्थर बिछा हुआ है।